यहां पर स्टील के बर्तन प्लास्टिक के बर्तन और ब्लैक कलर के बर्तन भी है।

यहां पर सड़क पर बहुत सारे कूलर की पंखुड़ियों जैसी पंक्तियां रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है।

लाइट लगी हुई है और यहां पर लोहे के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं।

बहोत सारे डस्टबिन रखे हुए हैं और यहां पर बहोत सारी मशीने भी हैं।

इस चित्र में एक बड़े से बोर्ड पर डायल गेमिंग इन स्टाइल डायल जी-सेवन फिप्टिन गेमिंग लेपटॉप लिखा हुआ है।

यहां पर दो लैपटॉप भी रखे हुए हैं चेयर रखी हुई है।

इस चित्र में एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है और पीछे भी कई रिक्शा है।

यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक सैलून की दुकान है जिसमें दो चेयर रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर बड़े अक्षरों में इशार लिखा हुआ है।

कुछ व्यक्ति भी है बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

साइड में रेत भी पड़ा हुआ है कुछ गट्टे भी पड़े हुए हैं।

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसने सिर पर कैप पहनी हुई है।

यह एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है।

जो की सफेद कलर के हैं इन मुर्गों को पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है।

इनमें से एक व्यक्ति ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

जिस पर बहुत ही बारीक डिजाईन हुआ हुआ है इस पर मोर की आकृति बनी हुई है।

यहां पर आलू लस्सन प्याज के बहोत सारे गट्टे रखे हुए हैं।

और भी बहुत सारी चीजें हैं चप्पल पड़ी हुई है।

जिनमें से एक व्यक्ति अपना फोन चला रहा है।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

यहां पर नीले कलर का एक जनरेटर जैसा कुछ मशीन रखीं हुई है।

लड़की ड्रेस पहने हुए हैं दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई है।

इस चित्र में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक डंडे के ऊपर लाइट लगी हुई है।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

कलर से अंबिका फिलिंग स्टेशन लिखा हुआ है।